भारतीय स्टेट बैंक सेंट्रल बैं--

यह एक बहोत बड़ा डाक--

जिसमें एक लड़का एक लड़का के हाथ पर टैटू बना रहा है।

गाड़ियां का कलर व्हाइट है।

है इसमें बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल र--

है इसने एक आदमी खड़ा है और कुछ कोलड्रिंक --

हैं और एक दीपक भी जला है।

और खान का सब आइटम रखा गया है।